एक आदमी चाय पी रहा है और एक आदमी बना रहा है उसने लाल रंग का शर्ट पहना है और वो कुछ बिस्किट वगैरा उसने रखा है खाने के लिए बेचने के लिए रखा है पीछे अपना पोस्टर लगाया हुआ है।

नीला वगैरह और यहां आदमी खड़े है और ऊपर से जो बिल्डिंग है वो सफ़ेद रंग की है और बैंक जो है वो बंदर है बैंक के लिए--